सामने मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं और नीचे की तरफ--

सामने की तरफ मुझे एक पुरानी सी गाड़ी दिखाई दे रही है।

जहां बहुत लम्बे सी सीढ़ी दिख रही है।

और आगे की तरफ बहुत सारी घर दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहुत सारे फूलों की माला लगाई गई है।

बहुत सारे बैनर लगायें गये है।